और अच्छे बहुत ज्यादा अच्छे हरियाली भी है बहुत ज्यादा अच्छे हरियाली भी है बहुत अच्छा लग रहा है यहां का नजारा और ये नदी के पास का --

वाव यहां पर बहुत ज्यादा बड़ी नदी है यहाँ और वो नदी भी और वहां बहुत ज्यादा भी है और आजू बाजू में बहुत --

यहां पर बहुत ज्यादा बड़ी मस्जिद है और वो मस्जिद बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है और उस वो मस्जिद को काच के लगाए है।

अच्छा दिख रहा है और पुर यहां पर पूरी हरियाली ही है और पूरे पेड़ पेड़ पौधे ही है तो यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा --